खंभे भी रखे हुए हैं उसके साथ उसके साथ में मिट मिट मिट मिट्टी मिट्टी --

हमारे सामने हरे भरे पौधे दिखाई दे रहे हैं।

पांच सेल एक साथ बाइक खड़ी हुई है बाइक के ऊपर--